जो घर रात के टाइम पर बहोत अच्छे से लाइटों से सजाया हुआ है।

हाथ में अपने पेपर भी लिया हुआ है और साइड साइड में घर भी हैं।

जिसमें बहोत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पिंजड़ा दिखाया गया है जो की लोहे का बना हुआ है।

लड़कियों की टहनियां भी लगी हुई है जो की सूखी है।

पीछे ही एक बाउंड्री भी घेराई हुई है जिसपर अलग-अलग चित्र बने हुए हैं।